इस फोटो में कुछ छोटे बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं।

और इस ड्रॉर के ऊपर एक ए_सी भी लगी दिख रही है।

सामने की ओर एक छोटा सा कमरा भी दिख रहा है जिसमे एक शीशे की खिड़की लगी है।

और इस गेट पर हरा और नीला कलर हो रखा है।

और लंबी दीवाल भी दिखाई दे रही है दीवार पर भी एक बड़ा बोर्ड लगा है।

और साइड में एक नीले कलर का पर्दा भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इनके सामने मेज भी बिछी है जिनके ऊपर इनकी बुके रखी हुई है।

इस फोटो में काफी सारा संगीत का सामान रखा हुआ है जैसे पियानो ढोलक और भी तबले।

ये काले अंगूर एक करेट में रखे हैं।

और छत पे सफेद कलर हो रखा है।

और फ्रंट दोनों टायर भी खोल रखे हैं।

पीछे कि साइड भी एक सफेद कलर कि बस खड़ी है।

इस फोटो में एक गंदी नदी दिखाई दे रही है जिसका पानी काफी काला दिखाई दे रहा है।

यह मूर्ति एक मेज पर रखी हुई है।

और धरती पर काफी सारे सूखे पत्ते फैले हुए दिखाई दे रहे हैं।